अच्छे डी_जे दिखाई दे रहे हैं।

यह किसी ढाबे के बाहर का दृश्य है।

बहुत अच्छे अच्छे स्नैक्स भी मिलते होंगे।

ये एक किराने की शॉप है जहां पे बहोत सी अनाज की बोरिया शैम्पू --

शिमला मिर्च भिन्डी खीरा करेला--

ये मंदिर के बाहर का दृश्य है।

पहाड़ भी बना हुआ है ये देखने में बहोत ही सुंदर लग रहा है।

एक कंस्ट्रक्शन साइड है जहां पे मजदूर अपने--

मात्राओं में चीजें उपलब्ध हैं और--

यहां पेड़ों पर छायादार पेड़ों के नीचे--

यह एक पोस्ट ऑफिस है और इसके बाहर--

पोस्ट ऑफिस की खिड़कियां खुली है और बाहर एक स्कूटी पार्क की गई है।

और उनको सर्व किया जाएगा और पीछे बहुत अच्छा--

बेड पे रखे हुए है और साथ में एक चेयर भी है और टेबल भी है।